इस छवि में कार दिखाई दे रहे हैं।

छवि में एक बड़ी सी अस्पताल दिखाई दे रहे उस अस्पताल का नाम आई_बी_एस अस्पताल है इस --

इस छवि में एक सुपरमार्केट दिखाया गया है ।

एक फ्लोर है ऊपर टेरेस है छोटी सी खिड़कियां दिखाई दे रहे हैं इस इमारत के बाजू एक पेड़ है।

लिखे गए हैं जिसने बनाया एक टेबल पर बिछा हुआ है।